दो गो है कि तीन गो दो गो ही है। आदमी एगो गेटमैन है।

यहां पर लग रहा है कोई पार्टी फंक्शन वक्शन हो रहा है। लेडीज सब बहुत ज्यादा बैठा हुआ--

ये आदमी एक जो है बहुत गोर से किसी को देख रहा है।

ये भी तो मछली वाली है ओ लेडिज बेच रही हैं मछली जैसे बात कर रही शायद किसी से बैठ कर हाँ ये मछली है।

ये कोई मूर्ति लग रहा है प्लस सोने का ओ बहार पूरा हरा-भरा दिया है ओर अंदर पूरा सोना ही सोना लगा है।

वैसे मछली कहाँ गढ़ा से निकाला जाता है इसको ये कोई नदी-उदी से पकड़-पकड़ा जाता है| ये छोटी-छोटी मछली सब जो है --

एक बाइक यहाँ लगी हु है। आदमी सब है बहुत हरी भरी पूरा गाछ है जो बहुत खूबसूरत है। वो पूल टूटी हुई है इसलिए ये पुल बना--

ये भईया जो शॉर्ट खोल के गंजी पहने हुए ठंडी न मार देगा भईया को लग रहा है ठंडी और ये हरा भरा घांची ये पहाड़--

यह बुक दुकान है बहुत बड़ा मस्त लग रहा है बुक दुकान ऊपर में वो गजब लग रहा है पता नहीं वो कितना क्या किया हुआ है कलर वगैरह सब मस्त लग रहा है। यह आदमी है।

ये कोई स्टेज बना हुआ है पीछे वाईट एसी लगा हुआ है।

ये बुक वर्ल्ड किताब दुकान बुक वर्ल्ड लिखा हुआ है।

ये बस में इतना आदमी बैठा हुआ है मतलब उपर भी बैठा लिया ये बस में । ये बस वाला लग रहा है पैसा का भुक्कल है।